और यहाँ पर चाय के साथ बिस्कुट वगैरह एक्स्ट्रा में ले सकते हैं हाथ वाथ को पोछने के लिए यहाँ पर टिश्यू पेपर वगैरह की व्यवस्था की हुई है ये होटल मुझे लग्जुरियस सा मुझे लग रहा है इसलिए यहाँ पे जो है यहाँ पर कुछ यहाँ--

जो ग्रीन बाहर बहुत ही सुदर लग रहा है जो नीचे जो कुछ पीने का घड़ा है। ये जो है--

और यहाँ का जो लाइट की फसिलिटी होती हैं बहुत ही जबरदस्त बार का मतलब देखे हम-- बार में जो लाइट वगेरह इसलिए अच्छी होती है क्योंकि यहाँ पे जो हैं लाइट के बिना तो कुछ होती नहीं है।

शादी में जो सबसे ज्यादा उनको जो है अलग दिखना पड़ता है इसीलिए वो दूल्हे को जो होती है अच्छी तरह से फेशियल वैगरह उनको कर देते ताकी उनको कोई दिक्कत नहीं हो।

कुछ और स्टील का जो सामान बन रहा है वो बनाने का यहां पे काम करती है और ये वर्कर सब जो है रेगुलर यहां पे मेहनत करते है अपने मेहनत के लगाव अपने मेहनत लगाव के दम पर जो है।

और यहाँ पे देखिए बच्चे बच्चे बड़े लोगों के पेरेंट्स लोग यहाँ से आए हुए हैं और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ यहाँ पे जो बाकी है सजावट --